ऊपर की तरफ बहुत सारे व्हाइट कलर के फैन दिख रहे हैं साइड में हमे बहुत सारे गेट देखने को मिल रहे हैं।

यह फोटो किसी बहार के एरिया से ली गई है यह देखने में किसी मस्जिद की फोटो लग रही है यह एक मकान दिख रहा है। जिसमें हमे पिक कलर की खिड़कियां--

ऊपर की तरफ हमें हरे हरे झाड़ियां के पत्ते देखने को मिल रहे है पीछे की तरफ एक खंबा देखने को मिल रहा है और यहां बाहर से --

इस फोटो फोटो बाहर से ली गई है इस फोटो में दो गाड़िया है एक गाड़ी वाइट कलर की एक गाड़ी ब्लैक कलर की पीछे की तरफ एक पोस्टर है जोकि बैंक का है।

इस फोटो में हमें एक बैंक देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर यूको बैंक लिखा हुआ है ऊपर तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है जोकि येलो कलर का है।